यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैदान में बैठे हुए हैं और यह बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और ये लोग को पढ़ने-लिखने सिखाया जा रहा है और ये बहुत अच्छा बात --

यह एक चट्टान है जहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और अ चट्टान बहोत ही बड़ा है और यह चट्टान बहोत ही सुन्दर --

यह एक बाजार है जहाँ पे बहोत सारे लोग हैं और यह वहाँ पे बहोत सारे मछलियाँ बेचते हैं।